यहां पे जो शीशे का बैकग्राउंड है वो ऑरेंज कलर है।

यहां पे जो सामने पार्टी का परदा लगाया हुआ है वो गोल्डन और रेड कलर से लगाया हुआ है।

यहां पे दो व्यक्ति सीढ़ी चढ़ रहे हैं जिसमें से एक येलो टी शर्ट और एक ब्लैक शर्ट पहना है।

यहां पे सामने बहोत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं जिसमें से एक्वालाइट लक्स कोजी लियोलाइट रिलैक्सो भी लिखा हुआ है।

यहां पे सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो कि कपड़े सईहार रहा है।

यहां पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं जैसे कटोरी मग ग्लास एक्स्ट्रा ।

दुकान की तस्वीर है यहां पे एक दीवाल में बहुत सारे रैक बनाए हुए हैं।

और राइट साइड में व्हाईट कलर से फ्रेंचाइजी संगम टायर लिखा हुआ है।